जो वो भी पीला केक है वो काला भी केक है जे कटोरी में पर्सी के रखी गई हैं।

ये गौशाला है। इनमें बहुत सारे गाय आए बदे हैं।

टीन परी है। खम्मा भी लगे हैं अ उसके लिए चारा भी है हरा सूखा। नादें बनी हैं।